यह एक टैटू की दुकान है और यहाँ पे एक लड़की को एक लड़का यहाँ पे पांव पे टैटू उतार रहा है.

पीछे पर्दा मारा गया है और यहां फूलों के लड़ा भी छोड़े गए है।

बोर्ड लगाया गया है ऊपर बहुत सारे कैमरे हैं जल्दी लाइट है फसों में और छोटे-छोटे झाड़ा के फ्लॉवर छोड़े हुए हैं।

और यहां पे पुतला भी लगाया गया है फिर जीसस का और ये एक लेडी यहां पे रही है।

मैट डाला गया है यहां पे बैग भी है यहां पे छोटे ।

ये एक टाटा मोटर्स की दुकान है यहां पे बहोत सारा सामान दुकान में दिख रहा है छोटे से--

ऊपर ब्लू कलर का आसमान भी यहां पे दिख रहा है और यहां सामने कपड़े भी डाले हुए--

ये एक सी जैसी रोड है यह ओवरब्रिज की रोड है नीचे नदी जाते हुए दिख रही है और पानी बह रहा है ब्लू कलर का पानी दिख रहा है।

पानी का डब्बा है और यहां पे उसके ऊपर यहां पे गिलास भी रखा हुआ है यहां पे मोबाइल के पीछे।

यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है यहां पे नीचे टाइल्स बिछाए गए हैं।

यह बच्चों पर रखा गया है मछियां है।

और आजू-बाजू यहाँ पे बरे बड़े यहाँ पे झाड़ा भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ --

यह एक जंगल है और यहां पे सामने एक लकदन के ऊपर मोर बैठी हुई है।

दे रहा है यहां सामने झंडा भी लगाया हुआ है यहां पे गोलियां है बहोत सारा--

ये एक पहाड़ दिख रहा है यहां पे जाने के लिए स्टेप भी बनाए हुए हैं।

और यहां पे आजू बाजू बड़े बड़े यहां पे झाड़ा भी दीख रहे हैं बड़े बड़े फसले भी यहां पे दिख रहे हैं।

आगे पहाड़ भी दिख रहा है यहां पे गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर लोग अपना अपना सामान लेके आगे जा रहे हैं यहां पे बाजू में--

ये एक लैब दिख रहा है यहां पे लड़के बैठे हुए हैं और यहां पे अलग अलग सेक्शन बनाया गया है।

ये एक रोड पे एक बड़ी सी बस खड़ी हुई है बाजू में रोड पे अदमिया जा रहे हैं बड़े कारा हैं टू व्हीलर्स हैं।

और यहां पे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं यहां पे स्क्रीनशॉट मारा गया है यहां पे मिट्टी पड़ी--

बड़े-बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे पोस्टर भी यहाँ पे लगाए हुए दिख लहें है यहाँ बाजू में।

बड़े-बड़े यहाँ पे झाड़ा भी दिख रहे हैं यहां पे गैस छोड़ने के लिए--

यहां पे बकली है और यहां पे गले में बेल्ट पहने हुए बहोत सारे--